ये ये कोई खेत ही फोटो है जहाँ की एक पक्षी है जो की नेवी ब्लू स्काई ब्लू कुछ सिल्वर वाइट ब्लैक कलर का दिख रहा है।

ये किसी का रूम है और पता नहीं किसका रूम है और यहाँ पे पर्दे भी दिखाई दे रहे है टेबल रखा टेबल रखी हुई है और यहाँ पे डस्ट्बिन भी रखा हुआ है।

टेबल पे कॉफी के लिए कप भी रखे हुए है बेड रखा हुआ है बेड पे बेडशीट भी है और यहाँ पे टीवी भी लगी हुई है दरवाजा भी दिख रहा है।